हमें एक महिला दिखाई दे रही हैं ऑरेंज रंग के सूट पहने हुए.

और हमें लकड़ी की बल्लियां दिखाई दे रही हैं मोटी और--

इस तस्वीर में हमें सोफे रखे दिखाई दे रहे हैं।

और भी बोर्ड लगे हुए हैं और एक आदमी हमें नजर आ रहा ह।

और कुछ सूखे पेड़ टेहनियां हमें नजर आ रही हैं।

एक बड़ा सा हरे रंग का मकान बना है।

अंदर भी लोग हमें खड़े नजर आ रहे हैं एक काउंटर रखा है और सीढ़ियां बनी है।

हरी हरी घास वहां भी लगी है और हरे-हरे पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें नजर आ रहे हैं बहुत सारे--

कुछ ईंटों से बने हुए बन दिखाई दे रहे हैं।

ऑरेंज रंग की कुर्सी है और पीले रंग की शर्ट पहना है वो आदमी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा।

हमें कुछ के चेहरे दिख रहे हैं कुछ के छुपे हुए हैं।

हमें तस्वीर के अंदर दिखाई दे रही है अ हमें नजर आ रही है ज-ज्-जमीन है और जमीन पे हमें पीली-पीली --

और स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है नीला नीला दिखाई दे रहा है हमें।

बड़े बड़े पेड़ हमें हरे हरे दिखाई दे रहे हैं।

टंगे हुए हैंगर में और सामने जमें हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें महिलाएं और आदमी नजर आ रहे है।

हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला लिखा हुआ है और प्रणाम नजर आ रहा है लिखा हुआ--

इस तस्वीर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है एक टेबल के ऊपर रखे हुए अ हमें--

इस तस्वीर के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी गाय हैं।

शेड डला हुआ है उनके पास और पेड़ लगे हुए हरे हरे--

और एक हमें कम्युनिटी हाल बना हुआ नजर आ रहा है।

नीचे हमें गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

और स्विमिंग पूल के ऊपर हमें लगे हुए टाइल्स भी दिखाई दे रहे--

और हमें दिखाई दे रहा है लाइटें लगी हुई हैं।

और ऊपर हमें अल्लाह मोहम्मद लिखा दिखाई दे रहा है।

तस्वीर के अंदर हमें बहुत सारा सामान रखा दिखाई दे रहा है अ जमा हुआ--

हमें इस तस्वीर के अंदर घास जमीन में हरी हरी और--

किसी जगह पीली-पीली भी हमें जमीन में दिखाई दे रही है।

पानी भरा हुआ है और एक झूले जैसा हमें पुल सामने दिखाई दे रहा है।

हमें दीवार बनी हुई दिखाई दे रही है डिजाइनर वॉल है।

हमें लाइटें लगी हुई और झूमर लगे हुए छत में दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर के अंदर हमें दो आदमी बैठे दिखाई दे रहे है।

और कार पर काम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं ये आदमी--